और खाना बाल्टीओ में रखा गया और ये इनडोर है।

पूजा कर रहे है करके सामने बहुत सारे मूर्ति रखी गई है और वो लोग प्रार्थाना कर रहे है।

पानी के ऊपर एक ब्रिज भी बनवाया गया और दो आदमी अपने शर्ट को उतार के अगरबत्ती पकड़ के --

इस तस्वीर मे हम लोग एक लड़का देख सकते है जो काले रंग की शर्ट पहन के सेल्फी ले रहा है उनके बाल बहुत लंबे है।

इस तस्वीर में हम लोग देख सकते हैं एक ग्रुप किसी डांस कर रहे एक मेन करैक्टर के खड़ी हुई है |

यह किसी नाई की दुकान को आज ही इनौगरेट किया गया है और बाहर बैलून लटके हैं |